एक चश्मे की दुकान है।

यहां दुकान में बाहरे टंगरे कप कपड़े टंगे हुए हैं।

और एक बाहर एक बलियान पर पुतला भी खड़ा है।

और बराबर में बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे भी खड़े हुए हैं।

और ईसाईयो मंदिर भी है।

यहां पर एक एलोप्लेन खड़ी हुई है।

और बहुत सारे आदमी एरोप्लेन के बराबर में खड़े हुए हैं।

लकड़ी के डंडे बंधे हुए रखें और खंभे खड़े हैं लकड़ी के।

और कुछ गुब्बारे गोल्डन कलर के भी हैं।

ये बैंकट हॉल में अंदर कॉलम भी रखी हुई है।

और बाहर एक गेट पे और दो तीन गमले भी रखे हुए हैं।

और एक या दो आदमी स्कूटी भी खड़ी है।

और एक सोफा पड़ा हुआ है लाल रंग का।

यह एक पालक का खेत है।

और यहां पालक चमक रहा है।

बहुत अच्छी हरा भरा खेत है।

और एक ये आदमी साइकल लेके खड़ा है।

यहां पर बहुत सारे बालक रास्ता पकड़ के खींच रहे हैं।

और एक आदमी अपने खत्ते किताब पकड़ा रहा है।

यह एक लेडीज कपड़ों की दुकान है।

और एक पुतला कुर्ती पहन खड़ा हुआ है।

और कबाडे को एक जगि इकट्ठा कर रहा है।

होटल के बाहर मूड़े रखे हुए हैं।

अस्पताल में दवाई मिल रही है।

यहां पर लैब जांच हो रही है।

और लेडीज फूल दे रही हैं।

गी गते के डिब्बे में भी सिलाई मशीन रखी हुई है।

और बाहरें बहुत सारे बांस लगे हुए हैं।

बहुत बड़े बड़े पेडे खड़े हैं।

और लेंटर गिर रहे हैं।

और यहां पर मसाला भी धरा हुआ है कुछ।

और अंदर दुकान में समान टंगा हुआ है।

यह एक ब्याह का टेंट लगा हुआ है।

और कुछ समान भी धरा हुआ है परे--

और ऊपर एक मन्दिर भी है छोटा सा।

और बराबर में त्यागी ऑटो पार्ट की दुकान है।

और बाहर एक मोटरसाइकल खड़ी है।

श्री सत्यनारायण इंटर कॉलेज शामली में है वो।

इसका बोनिट खोल रहा है और आइसर की--

और इसपे सौर ऊर्जा की खंबा खड़ा है।

और बराबर में बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं।

मेज पे रखे हुए हैं।

पब में दो तीन लड़की नाच रहीं हैं।

राधा कृष्ण की म मूर्ति बहुत अच्छी तरीके से सजी हुई है।

मंदिर में एक भगत पूजा कर रहा है।

हिरन चुग रहे हैं घास--

इस जंगल में तीन चार हिरन है।

और नारियल के पेड़ भी है।

और टंकी रखी है और ऊपर है बहोत बड़े बड़े मकान बन रहे हैं।

और कुछ लोहे का सामान पड़ा है।

एक बाहरे मोर का गुलदस्ता रखा हुआ है।